यह एक दुकान है जो की जॉकी का है इसमें एक आदमी बैठा हुआ है।

और ऊपर बैलून लगा हुआ है व्हाइट और ब्लू कलर का।

यह फोटो एक स्कूल का है। जिसका नाम इमेजिन रॉटरी है।

इस फोटो में एक नर्सरी दिखाई दे रहा हैं जिसका नाम सदाबहार नर्सरी है जो की लातेहार में है।

बगल में खिड़की भी दिखाई दे रहा है उपर लाइट भी दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का।

इस फोटो में एक घर नजर आ रहा है जिसमें अंदर बहोत सारे लोग हैं।

बाहर एक टेंपू भी खड़ा है बाहर दो तीन गाड़ी भी खड़ा है बाइक --

इस फोटो में बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें तीन-चार खिड़की नजर आ रही है।

फोटो में एक ठो पंजाबी ढाबा का फोटो है जिसका नाम मिश्रा जी का पंजाबी ढाबा है।

उसी में डिलीवरी प्वाइंट भी है ऊपर एक ठो जिम भी दिखाई दे रहा है।

और बगल में पेड़ भी दिखाई दे रहा है।